अअअअ यहा पे ये मैदान और- र- एक बिल्डिंग बनी हुवी है सामने उसी के पीछे बोहोत सारे ये झाड लगे है।

का रंग हरा है और इधर का जोकि कलर है गेट लगा है उसका रंग काला है घर का पेंट नीला है सफ़ेद है ऊपर आसमान दिख रहा है इसका रंग नीला है।